यहां पे बहुत सारे कैफे दिख रहे हैं और बाहर की तरफ कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं।

यह तस्वीर एक पार्क की लग रही है।

यहां पे अनगिनत बुक्स पड़ी हुई हैं और यहां पे फूलों से बहोत अच्छे से सजावट हो रखी है हिंदू देवताओं की मूर्तियां यहां पे रखी हुई है।

और सभी लोग यहां पे बहोत प्रेम पूर्वक रहते हैं।

यह देखने में बहोत ही सुंदर तस्वीर लग रही है।

यह तस्वीरें एक हॉस्पिटल की लग रही है।

ऊपर आसमान मे बादल दिख रहे हैं यह एक बहोत ही मनमोहक दृश्य है।

यह तस्वीर नेचर को दर्शाते हुए बहुत ही सुंदर तस्वीर है यहां पे एक हट बनी हुई है और ग्रीनरी बहुत सारी है।

यह तस्वीर एक क्रियाने की दुकान की है यहां पे दो लोग सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां सभी बच्चों की ड्रेस नीले रंग की है और लड़कियों की स्कर्ट ग्रे कलर की है जबकि लड़कों की पेटें ग्रे कलर की है।